और यहां पे बहुत लोग पूजा करने आते हैं।

यह हीरो स्प्रिंट साइकिल का शोरूम है।

और इधर कांच बिछा हैं ऊपर तार वगैरह हैं और भी बहोत सारी चीज हैं।

यह एक किराना का दुकान है और वहां पेप्सी का कंपनी का फ्रिज लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं।

और जिसके मालिक जगन्नाथ शाह हैं।

यहां पे बहोत सारे चीज रखा हुआ है।

यह एक न्यू ताज हेयर सलून है।

यहां बजाज का सामान रखा हुआ है हार्डवेयर का दुकान है बाहर मिक्सी वगैरह कुकर सब रखा हुआ है।